दिखाई दे रहें है और बहुत से पेड़ पौधे हैऔर यहाँ बहुत से पत्थर डलें हुए हैयहाँ बहुत अच्छा हमें लगता हैयहाँ पर।

पार कितना अच्छा हमें दिखाई दे रहा है और कितनी सारी पेड़ और पौधे हैं और काफी हैं।

म्म् ये कितना अच्छा मकान बना हुआ है और बिल्डिंग भी बनी हुई है।

यह बोहोत अच्छा ही गांव है। यहां बोहोत अच्छे लगती है।